उस दुकान के बाहर लाइटिंग लगी हुईं हैं।

यहां पे मुझे चार सीढ़ियां दिख रही है चढ़ने के लिए।

ऊपर पोल्स है वाइट कलर के हमें पकड़ के खड़े रहना है वायर दि --

मुझे एक ब्लू कलर का डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

और राइट साइड में थोड़ी खिड़कियां दिख रही है।

इस दुकान पे मुझे एक सैनिटाइजर स्टैंड दिख रहा है।

चार हरे रंग के डीब्बे दिख रहे हैं एक बैठने के लिए चेयर दिख रहा है।

एक नदी है नदी में एक बोट दिखाई दे रही है।

चार पांच सीढ़ियां है जिसपे थोड़ा कचरा पड़ा हुआ है एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है।

एक लड़के ने सफेद कलर का टी शर्ट पहना हुआ है एक लड़के कि टी शर्ट पे बाइक का फोटो है।

लिखा हुआ एक बोर्ड दिखाई दे रहा है एक आदमी सीढ़ी बाहर की तरफ खड़ा है।

राइट साइड पे एक गेट दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ तीन चार पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

व्हाइट कलर के कुछ टेंट टाइप के दिखाई दे रहे हैं।

येलो कलर की बिल्डिंग है जिस पे कॉर्नर पे रेड कलर दिखाई दे रहा है।

लाल कलर के पत्थर जैसे सर्कल कुछ बनाए हुए है।

तीन-छह लड़के येलो कलर का शर्ट पहने हुए खड़े हैं।

मुझे एक सफेद रंग की कार दिखाई दे रही है।

यहां पे लाल कलर पहने हुए ड्रेस की एक लड़की दिख रही है।

इसके गले में ब्लैक कलर का मंगलसूत्र है ये लड़की ने दोनों हाथों में--

व्हाइट कलर के चेयर्स रखे हुए हैं ब्लू कलर का एक पर्दा है।

ऑरेंज कलर का पेंट किया हुआ एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

नीचे टाइल्स का कलर येलो और रेड हैं।

बोर्ड पे बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है।